ये एक दुकान हैं जिसमें की बहोत सारा समान पड़ा हुवा हैं।

ये एक बहोत बड़ी दुकान है जिसमें की--

एक बहोत एक लड़का खड़ा हुआ है और उसमें कोल्ड ड्रिंक का--

और एक ऊपर दिन का समय है --

ये बहुत सुंदर लग रही है इसमें बहुत कुछ लगा है रखा हुआ है ये इसको अच्छे से सजाया हुआ है और पत्तियां ल --

और इसमें नीचे बहुत अच्छे से टाइल को रखा हुआ--

सारा सामान पड़ा हुआ है इसमें बहोत कुछ लिखा है एक बैग और पड़ा है जो की--

नीचे इसके एक डिब्बा रखा हुआ है जिसमें कि चाप मलाई चां--

सारी लोग रहते हैं और बिल्डिंग का रंग व्हाइट कलर का है आसपास उसके पिंक कलर के फुल लगे हुएं हैं और उसके सामने बहुत सारी बाइक खड़ी हैं।